यह एक बहुत बड़ा हॉल है इस हॉल में बहुत सारी टेबल और कुर्सी लगी हुई हैं इस हॉल में बहुत सारे लाइट और पंखे भी लगे हुए हैं इस हॉल को बलुन से सजाया गया है और यह जगह बहुत ही साफ है यहाँ बहुत सारे लोग आकर बैठते हैं ।

यह एक मंदिर है इस मंदिर के बीच में एक मूर्ति है यहाँ बहुत सारे लोग इस मूर्ति कों पूजा करने के लिए आते है इसके बाहर में कुछ महिलाएं खड़ी है और इसके चारो ओर बहुत बड़ा घर बना हुआ है।